और उसके पास में सूखे पेड़ है और एक लाइट भी है और इसके आगे भी लाइट है।

बहोत सारे टी_वी रखा हुआ है।

पास में एक और दुकान है जिसमें एक लेडिस एक जेंट्स भी है और --

इस तस्वीर के अंदर एक सफेद बिल्डिंग है जिसमें --

दो स्त्री सार अं नही सारंगी बजा रहा है एक जेंट्स भी है जो ढोलक बजा रहे हैं।

लकड़ी का जो लकड़ी का वहां पर खंड बना हुआ है उसके अंदर कुछ किताबें --

बहोत ही चार पांच लाइट लगा हुआ है जिसका कलर लाल है सफेद रोशनी है और रोशनी के आगे दीवार के आगे --

और एक ए_सी लगा हुआ है बिल्डिंग के ऊपर और पीले कलर का बिल्डिंग है उसमें कुछ लिखा हुआ है।

एक मकान है मकान के ऊपर एक गुलाब का फूल है एक गणेशजी का है और

आसमानी कलर का प्रिंट किया हुआ है और एक पेर है पेर से आगे एक मकान है मकान के ऊपर एक पानी टंकी है।

अंदर में एक लोहे का स्टील का बैठने का घर बना घर जैसा है टेबल लगा हुआ है और --

दो कलर हरे हैं दो अह दो थोड़ा ब्लैक है और चार तो अलग अलग कलर का कुर्सी है और मकान का --

भोलेनाथ का एक छोटा सा मंदिर है और उसके जस्ट पास में भरतीया सामने गणेश जी का भगवान का फोटो लगा हुआ है।

जिसमें कि वो एक दो साइकल जैसा बना हुआ है और आगे --

इस चित्र के अंदर एक पत्थल का --

दीवार बना हुआ है पत्थल से दीवार बना बना हुआ है जो पत्थल से सीढ़ी भी है पास में पेड़ है।